यह एक लड़का मेकेनिक का काम कर रहा है अभी और वह कोई सामान था जिसे वह ठीक कर रहे थे अभी और नीचे बहुत सारे नट बोल्ट रखा हुआ है और वह अपने हाथ साफ कर रहे अभी कपड़े से।

सब्जी मंडी है जहाँ पे सब्जी बेचे जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप क्या रेट में आलू रखा गया है और यह व्यक्ति ख़राब मिर्ची और बढ़िया मिर्ची को एक साइड में छांट रहे हैं और देख सकते हैं पॉलीथिन में भर --

यह एक तालाब है और तालाब में मछली पाले जाते हैं और ये बोहोत प्रकार के मछली मिलते हैं तालाब में और तालाब में और भी कीड़े मकोड़े पलते हैं मछली के साथ-साथ इसमें मेढक कछुए और कीड़े कीट-पतंग यहाँ पे--